रोड पास हो रही है और बगल वाली साइड में बहोत सारी चारा लगाया गया हुआ है खेत और यहाँ पे एक का पोल लाइट लेट पर देख सकते --

पर ये जैसे देख सकते है यह अपार्टमेंट टाइप की बिल्डिंग जहाँ पे चार फ्लोर है।

जैसे कि देख सकते हैं एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे बैठने का इंतजाम के लिए सोफा लगाया गया है टेबल के --

वगैरह देख सकते हो और यहाँ पे एक नीचे में एक बास्केट रखी गई है लाल रंग की --

और उसके बगल में एक पीले रंग की बकेट लगाई गई है और यहां पर गाड़ियां -

और और वहाँ पे वो येलो कलर का ग्रास है और ग्रीन है फिर आसमान दिखाई दे रहा है आसमान ब्लू कलर रंग में है।

और जैसे कि देख सकती हूं यह वाला है ओपन ग्राउंड ।

कोई गले लगा रहे हैं और इन लोग एक को बांधा हुआ नजर आ रहा है और एक ऐसी खड़ी है यह दो गाय पानी के भीतर खड़े हुए हैं।

अ फूलों वाला आर्टिफिशियल पौधा रखा गया है और ऊपर साइड --

और यूनिफॉर्म की शर्ट और पैंट पहनी हुई है और उनके एक के गले में तो हम टाई देख सकते हैं और एक के फेस पे मास्क लगाया हुआ है।

ये पॉलिटेक्निक सुकाम बोलके और इसके बाहर बहुत सारी गाड़ियां पार्क की गई है।

अ जैसे कि देख सकती हूं यह नदी के किनारे एक छोटी सी बोट --

जैसा कि देख सकते हैं यह एक बिल्डिंग है इसके चार फ्लोर है और बहुत खिड़कियां नज़र आ रही हैं।

और साम आगे पर लॉन नजर आ रहा है जहाँ पर हरे रंग का ड्रेस पड़ा हुआ है और छोटे पेड़ है।

जैसे कि मैं देख सकती हूँ यह एंट्रेंस लॉबी है यहाँ पे लाइट्स लगाई गई है नीचे वाइट टाइल्स है और --

और जैसे कि मैं देख सकती हूं यह होटल अनुराग पैलेस है और रिसेप्शन का काउंटर है जो ब्राउन कलर के टेबल है उस टेबल पे रेड कलर का--

एंजॉय मिरर के आईने के आगे खड़े हुए इसने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ हैं।

नीचे मैट दिखाई गई है इधर आगे में कैटल बेल रखा हुआ है नीले रंग का और आदमी एक्सरसाइज क--

और पीछे की तीन डीब्बीयों में चियर्स लगाए गए है और ऊपर जो कवरिंग है उसका रंग --

इसके जो पिलर है वह लाल रंग के है और इसके बगल में बहोत सारे पेड़ है और--

जैसा कि मैं देख सकती हूँ ये यहाँ पे अ रूम में बेड लगा हुआ है बेड पे सफेद रंग की बेडशीट लगी हुई है रे लाल रंग की ब्लैंकेट और --

फिर आसमान का रंग नीला है पानी भी नीले रंग का दिख रहा है बहुत सारे पतंग का रंग बिख बिखर गया है।

और बच्चे रंग बिरंगी साड़ीया पहनी हुई है एक बच्चा करना कर्नाटका फ्लैग पकड़ा खड़ा हुआ है एक लड़का उसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है।

जैसे कि देख सकते हैं ये वॉटरफॉल है यहाँ पर लोग खेल रहै हैं पानी के दरमियान--

व ऑफिस बोर्ड पर लोन का प्रमोशन किया गया है और यहाँ पर फूल भी लगे हुए हैं पीले और ऑरेंज रंग के--

अ नीला और साइड में जो है पथरी पड़ी हुई है अचानक खूबसूरत स--

और सुकुमा सुकुमा सीजी

जैसे की में यह देख सकती हु यहाँ पे एक बड़ा-सा मुर्गा नज़र आ रहा है और बगल में पौधे रखे हुए हैं।

और जैसे कि देख सकती है यहाँ पर एक लड़का फोटो के लिए पोस देते हुए बैठा हुआ है उसके बगल में--

अ जैसा कि देख सकती हूँ अ ए ए पानी का झरना है इसमें पानी --